देखिए ये एक मंदिर सा है और इसके अगल बगल में पेड़ भी है और इसके आगे दो बच्चे भी घूम रहे हैं।

देखो ये हीरो के नाम से एक एजेंसी है और इसमें कइ स्कूटी और कइ गड़ियाँ भी दिखाई दे रही है और इसके आगे भी एक मोटर साइकिल खड़ी --

और ये बंदा है और इसमें ये ये कुर्सी ये दो पिलर से भी दिखाई दे रहे हैं।